पीछे एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

उपर रंगबिरंगे झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कांच के शीशे मिलते--

नाई ने मास्क लगा रखा है।

साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ--

लाल पीले रंग की छतरियां हैं।

यहां पर बहुत कचरा भी है।

बुद्ध भगवान हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं।

यह तस्वीर हाजीपुर जंक्शन की दिखाई दे रही है।

नीचे मैट भी बिछा हुआ है।

साथ में गेट पर लाल रंग के--

खेत में पानी दिखाई दे रहा है।

और वह पीछे बिजलीके वो वे दिखाई दे रहे हैं।

एक सफेद रंग का टेबल भी दिख रहा है।